इस तस्वीर में मुझे एक बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देखने को मिल रहा है यहां पर --

यहां पर एक बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है यहां पर एक व्यक्ति है जिसका --

अंदर घर के कलर किया हुआ है एक बार बोर्ड भी लगा हुआ है दीवार पर घड़ी भी लगी हुई--

गुब्बारे लगे हुए हैं सफेद और गुलाबी रंग के हल्के हल्के सफेद और हल्के हल्के गुलाबी है बहुत ही अच्छा पेंट किया हुआ है।

दुकान दिखाई दे रही है जो फुटकर व्यापार की दुकान दिखाई दे रही है जो कपड़ों की दुकान है कपड़ों को अंग्रेजी भाष भाषा में --

या फिर इसे बावड़ी भी कर सकते हैं हम आसपास में इस नदी या झील के तट पर पेड़ पौधे भी है दीवारें भी है।

इस तस्वीर में एक स्कूटी खड़ी हुई बाहर है और एक लाल कलर का शर्ट पहना हुआ व्यक्ति है और यहां पर एक--

जो राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष है राजस्थान का राज्य वृक्ष है एवं यहां पर पानी की झील भी है कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है इस रूम के अंदर बहुत सारी कुर्सियां बैठने को मिल रही है यहां पर --

अच्छे से सजावट की हुई है एवं दृश्य देखने के लायक है।

अच्छी सी मन को लुभाने वाली--

बहुत ही सुंदर है एवं अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं।

यहां पर एक घर है इस घर में लैपटॉप है और बैठने के लिए कुर्सियां भी है।

यहां पर एक बहुत ही बड़ा घर है और इसके नीचे बहुत सारी मोटरसाइकिले पार्क की गई है एक व्यक्ति --

पेड़ है जो हमारे को ऑक्सीजन देता है इन बाहर दो मोटरसाइकिल भी पार्क की गयी है होंडा या सुजुकी कौन सो भी हो सकती है।

यहां पर एक मुझे बहुत ही अच्छा सुंदर सा दृश्य देखने को मिल रहा है यहां पर एक फोटो में मुझे एक --

दो चार मोटरसाइकिल स्कूटियां भी पार्क की गई है यहां पर एक फुटकर व्यापार की दुकान या फिर कोई कंपनी है बहुत ही बड़ी है।